यहाँ एक झील दिखाई दे रही है जिसमे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर छोटे-छोटे टूटे-टूटे पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर कुछ घासे भी दिखाई दे रही हैं सुखी आसमान में बादल दिखाई पड़ रहा है।

सामने में कच्ची जमीन नज़र आ रही है।